बगल में कई सारे केले के पत्ते दिख रहे हैं।

बगल में कई सारे गाड़ी पार्क किए हुए हैं गाड़ी के ऊपर एक रेड कुछ लाइट लगा हुआ है।

पीछे में एक पोल दिख रहा है जिसके ऊपर सोलर लगा हुआ है पीछे में कई सारे पेड़ दिख रहे--

घर के बाहर एक कुत्ता जा रहा है उसके नीचे कई सारे पत्ते गिरे हुए हैं।

यहां पे कई कई टहनी पर कांटे लगे हुए हैं।

पानी के तट पे चार बत्तख दिख रहे हैं जो उजले रंग के है एक ब्राउन कलर का है।

मशीन के अंदर कई सारे लोहे के तंटे फिट किए हुए हैं यहां पर एक टैंक दिख रहा है उसके नीचे में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें चार चक्के लगे हुए हैं यहां पे एक डब्बा रखा हुआ है यहां पे एक इंटा गिरा हुआ है।

और पीछे कई सारे घास दिख रहे हैं यहां पर कई सारे पौधे उगे हुए हैं।

बगल में एक तार दिख रहा है नीचे एक पोस्टर है यहां एक लाइट जल रहा है।

और गाड़ी का पिक्चर बना हुआ है एक गाड़ी ब्लैक कलर का दिख रहा है यहां पे कई सारे टायर रखे हुए हैं टायर के ऊपर कई सारे पेपर चिपकाए हुए हैं।

दुकान के अंदर एक टेबुल दिख रहा है टेबुल के ऊपर कई सारे पेन रखे हुए हैं पेंसिल रखा हुआ है।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

रूम के अंदर चार महिला दिख रही है एक महिला बैठी हुई है।

उसके हाथ में ऑरेंज कलर का कपड़ा है यहां एक महिला और बैठी हुई है।